एक सड़क घये है सड़क में बहुत से ट्रेके खड़ी है बगल में बहुत से पेड़े है जिनका रंग हरा है।

एक बड़ा-सा ठेला है ठेले में बहुत सी सब्जियाँ है जैसे टमाटर मिर्ची भिंडी प्याज एक किलो बाट है उसमें मिर्ची तौली जा रहीं हैं एक झोला है कुछ लोग खड़े है।

और एक पटली है एक ट्रैन खड़ी है।

एक गैरेज है गैरेज में कारे है बोहत से दो कारे है दो कारे है बोहत से लोग खड़े है जो एक दो लोग कार बना रहे है सामने की साइड बड़ा-सा मकान है।

एक पहाड़ है पहाड़ में बहुत से पेड़ -पौधे हैं जिनका रंग हरा- भरा है नीचे की ओर पानी है पानी का रंग नीला है बहुत से लोग नहा रहे है बड़े -बड़े पत्थर हैं बहुत से घासे हैं जिनका रंग हरा है।

एक केरट रखी है उममे स्प्राइट की बोतले कांच की बोतले रखी है एक क्यू आर कोड रखा है एक आदमी बैठा है कुर्सी में।